यह एक पुराना सा घर है। यहा पे एक बल्ब जल रहा है। और यहा पे एक ही मेन डोर है।